इस फोटो मे पानी का झरना दिखाया जा रहा है जिस मे ऊपर की तरफ से पानी बहता हुआ नीचे की तरफ आ रहा है नीचे थोड़ी सी झील दिखाई दे रही हैं आस पास कुछ पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है जो हरे कलर के दिखाई दे रहे है।

उसका मुँह भी पैक दिखाई दे रहा है इसपे ब्लैक कलर का कुछ कलश लगा हुआ है सामने की तरफ एक गन रखी हुई है जिसका कलर रेड और ग्रीन दिखाई दे रहा है।

चारों सैनिक के हाथ मे बंदुके दिखाई दे रही है बंदूक चारों तरफ दिखाई दे रही है।

हमे सामने की तरफ केले दिखाई जा रहे है केले बहुत अधिक मात्रा में दिखाए जा रहे हैं एक कैरेट में केले रखे हुए हैं इस पर ब्लू कलर से कुछ लिखा दिखाया जा रहा है इसमें सामने की तरफ मटर दिखाई जा रही है मिर्च दिखाई जा रही है।

लकड़ी दिखाई जा रही है जिसमें सब्जी तोड़ी जाती है आमने-सामने एक कुर्सी दिखाई जा रही है।

सामने की तरफ एक खजूर का पेड़ भी दिख रहा है एक काटने वाला पेड़ दिखाई दे रहा है जो दूर से ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा है।

इस फोटो मे एक खाली रोड दिखाया जा रहा है रोड के ऊपर एक घर दिखाया जा रहा है जिसमे एक पोस्टर लगा हुआ दिखाया जा रहा है।

यह एक दुकान दिखाई जा रही है यहां पर दो शटर रखी हुई दिखाई जा रही है सामने की तरफ एक टेबल रखी हुई दिखाई जा रही है उस टेबल के ऊपर एक वाइट कलर की कूलर रखी हुई दिखाई जा रही है।

इस फोटो में एक दीवार दिखाई दे रही है दीवार पर दो बंदूके बनती हुई दिखाई दे रही है बंदूकों का कलर सफेद दिखाई दे रहा है बंदूके चैन से बंदी दिखाई दे रही है ऊपर की तरफ उन का मुँह दिखाई दे रहा है।

इस फोटो मे एक मंदिर दिखाई दे रहा है मंदिर के ऊपर व्हाइट कलर का शिखर दिखाई दे रहा है कुछ चेयर दिखाई दे रही है।

इस फोटो में एक मस्जिद दिखाई दे रही है मस्जिद बहुत बड़ी दिखाई दे रही है उसके ऊपर एक छोटी दिखाई दे रही है मस्जिद के पास एक बहुत बड़ा रास्ता दिखाई दे रहा है।

फोटो मे सामने की तरफ बादल दिखाई दे रहे है बादलों का कलर रंग बिरंगा दिखाई दे रहा है ब्लू दिखाई दे रहा है व्हाइट दिखाई दे रहा है ग्रीन दिखाई दे रहा है परपल दिखाई दे रहा हैं।